ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस--

और यहां पे आप देख सकते हो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं।

चारों कुर्सियों में से दो कुर्सियों का रंग--

यहां पे आप देख सकते हो ये ए_आर मोटर्स लिखा हुआ है और यहां पे--

और यहां पे आप देख सकते हो।

कॉफ़ी ले रहा है चाय देख रहे हैं यहां पे पूरी यहां पे चाय की टंकी रखी हुईं हैं।

ग्रीन कलर के कपड़े पहन रहे और इन्होंने टोपी पहन रखी है सफेद रंग की टोपी पहन रखी है।

और यहां पे ये नीले रंग की वो शर्ट पहन रहे हैं।

पूरे एक आदमी ने चश्मे लगा रखे है और यहां पे लाइट का भी प्रबंध है यहां पे आप देख सकते हो।

यहा पे झूले दिख रहे है यहा पे झूले है।

यहां पे आप देख सकते हो गुड़िया गुड़िया दिख रही है यहां बच्चों के खिलौने देख रहे हैं।

यहा पे आप देख सकते हो ये यहा पे आसमान दिख रहा है और यहा पे आप देख सकते हो ये यहा पे --